अंदर के साइड पे बसे की सीट दिखाई जा रही है जो नीले रंग की है औ बीच में काले रंग के सामने भी एखे सीट है जो नील रंग की है। काफी साफ सुथरा सीट है। ऊपर के साइड पे जो सत है सफ़ेद रंग की है।

साऑफिस है जो बोहोत सारे लोग अंदर के साइड मे बैठे छोटे छोटे काउन्टर बनाए गए हैं।

कुछ गमले रखे गए हैं भूरे रंग के और हरे रंग की पत्तियाँ हैंएक मुर्गा है सफेद रंग की बगल में जाली बिछी हुई है ये सामने के साइड पे पानी भरा हुआ है जो हरे रंग की उस पे काई जमा हैबगल में एक पर्दा है जो भूरे रंग का है और कुछ काली रंग की पन्नी --

छोटा सा पार्किंग हैजो बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई शफेद रंग की कुछ बाइक भी खड़ी हैं। जो शफेद रंग की बाइक है बगल में काले रंग के कार खड़े हुएं हैं।

रोड आ रही है जो बगल में एक गाड़ी खड़ी हुई है जो काले रंग की अगल-बगल एक घर बने हुए है जो शफेद रंग के और नीले रंग के घर है शफेद और नीले रंग के आसमान है।

सर पे मौसमी रखे है। हरे रंग की और अनार रखे गए है लाल रंग के पीछे एक साइड पर बड़ी सी बिल्डिंग है सफ़ेद रंग की केले लटके हुए है हरे रंग के और लाल रंग के --

के अनार रखे हुई है बग़ल से एक रिक्शा जा रही है पीछे साइड पे एक कार आ रही है औ कुछ साइकल से चल के आ रहे हैं।

ये एक कार खड़ी है और जो सफ़ेद रंग की कार है। ऊपर की साइड पे फूल लगाए गए हैं लाल रंग के हरे रंग की पत्ती हैं पीले रंग के फूल लगाए गए हैं।